खेलने का समान और योगा करने का समान भी है।

एठो एगो शादी घर है शादी घर मे बहुत ज्यादा बेलून और लाइट और कुर्सी लगाया गया है इ शादीघर तो बहोत ही बड़ा पंडाल भी है इ पंडाल बहोत

काम हो रहा है और यहाँ पर एगो जे.सी.बी. है जे.सी.बी. मे चार गो चक्का और दो गो सूंड लगा हुआ--

एठों एक ठो बड़ा जैसा झील है झील के साइड मे एक ठो छोटा जैसा पुल बना हुआ है और ये झील--